हाई रोड बहुत दूर तक जा रहा है शायद--

अ भुट्टे अदरकलैसन कई सारी चीजें बिक रहा है।

पीछे एक टोकड़ी भी है जो लाल रंग की है।

बहुत सारे कई सारे गाड़ी भी खड़ा हुआ है एक--

अ जो क्लाउड दिख रहा है और नीचे बहुत सारे अ--

और सामने बहुत सारे कई सारे पत्थर इधर-उधर गिरा हुआ है।